जेंट्स ने सब लोगों ने व्हाइट कलर की शर्ट्स डाली हुई है।

डॉक्टर्स की क्लिनिक की पिक्चर है।

ये जो आप लोगों के सामने एक शोरूम की पिक नजर आ रही है।

जिसके ऊपर फाउंटेन बना हुआ हैं।

जो बहोत ही हरे भरे हैं।

इसके भी आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर हरे रंग के वृक्ष हैं।

जहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर पहाड़ियां नजर आ रही है।

खेत का नजारा हैं जहां पर किसी ने छोटा सा एक कमरा जिसको भी ग्रीन कलर करवाया गया हैं।

शॉप की लग रही है जहां पर खाने के लिए चेयर्स और टेबल्स लगे हैं।

किसी ने भी क्यूसी भी तरह का कोई पौधा लेना हो तो नर्सरी में जाता है।

नर्सरी की लग रही है जहाँ पर फूल बुटे कुछ भी हमलोग परचेस कर सकते है।

ये जो आप पिक देख रहे हो--

वाहेगुरु की किरपा से इसका डी_जे बहोत ही अच्छा चले।

बाहर भी खड़े हुए हैं जो इस शोरूम को अच्छे से देख रहे हैं।

इसमें एक बेड है और एक टेबल स्टैंड रखा हुआ है एक ड्रिप लगाने वाली बोटल्स का भी स्टैंड रखा गया है।

कुछ लोग डी_जे का काम भी चला रहे है डी_जे के पास ही खड़े हुए है।

ये जो पिक्चर नजर आ रही है ये एक कंप्यूटर सेंटर की पिक्चर है इसमें बहोत सारे कंप्यूटर्स रखे गए हैं।